स्टेट बेक ऑफ़ इडिया है जिसके ऊपर एक छत्री लगी हुई है एक खिड़की है एक मीटर लगा हुआ है बाजू मे हैएक गेट है पिक कलर का पुता हुआ है।

ये यूनियन बैंक है जिसके सामने दो मोटर साइकिल एक कार और एक लेडिज और दो जैंट्स खड़े हुए है इसमे लोहे का गेट लगा हुआ है।

यहाँ तीन ऑटो खड़े हुए है जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजे हुए है नीचे ब्लू कलर की चादर बिछी हुई है जिस पर ये --

ये एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जिस मे लोहे का चेन गेट लगा हुआ है बाजू मे तीन पोस्टर लगी हुई है एक डस्ट्बिन रखा है।